ये एक पायदान है और यहां पे बहोत सारे अलग अलग तरह के पायदान रखे हुए हैं।

लाइट भी लगी हुई है और यहां पे बहोत सारे पेड़ भी है।

यहां पे दो और आदमी पीछे खड़े हुए हैं।

नीचे बैग भी रखा हुआ है और यहां पे बहोत समान है।

ये एक जन सेवा केंद्रित है।

यह एक फोनपे का भी लगा हुआ है।

ये पिज्जा हट है और यहां पे अमूल का एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पे सीमिट की कुर्सी बिछी रही है।

बहुत सारे डिब्बे रखी हुई है प्लास्टिक की उसने सामान रखा हुआ है।

और एक गिलास भी रखा हुआ है।

यहां पे निरेस यहां पे नीरे सारे स्टुजन खड़े हुए हैं और यहां पे एक टीचर सीखा रहा है।

यहां पे पंखे भी लगे हुए है।

यहां पे ढेर सारे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

और वहां पे पेड़ भी है और यहां पे छोटे छोटे पेड़ भी है।

यहां पे दोनों साइड यहां पे झंडी लगी हुई हैं।

नीले कलर की क्रेट है इनके पास वहीं एक काम कर रहे हैं यहां पे--